उसके ऊपर का डिश रखी हुई है जो कि सोयाचाप है।

और काफी सारे लोग खड़े हैं बॉयज खड़े हैं।

गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है।

पिंक कलर की लाइट्स हैं क्रॉस का निशान बना हुआ हैं।

और एक डंडा लगा हुआ है जिसमें नमकींस टंगी हुई है।

और कुछ लड़कियां बैठी हुईं हैं आसपास बहुत स बड़े बड़े पेड़ हैं।